और सामने बहुत बड़ा चबूतरा है जिसके कलर के पट्टे ब्लैक येलो है।

ये डांस शो का बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है जिसमें एक लड़की भारत माता बनी हुई दिखाई दे रही जिसके हाथ में तिरंगा का झंडा है।

यहां पर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यहां पर स्पीकर साउंड रिंग लाइट और गिटार जैसी चीजें हैं।

बहोत सारे फूल और पेड़ लगे हुए हैं ये बगीचा है।